यहां पे एक खिड़की है खिड़की के बाहर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सी कुर्सियां पड़ी हैं जो लकड़ी की हैं पीले रंग की हैं।

यहां पर बहोत से आदमी बैठे हुए हैं जो मछलियों को काट रहे हैं।

यहां पर एक शीशा लगा हुआ है यहां पर काले और सफेद रंग के गुब्बाड़े लगे है।

जीने बड़े हैं जीने पे एक वाटर कूलर रखा है जो नीले रंग का है।

यहां पर बहुत सी कुर्सियां पड़ी हैं मेज पड़ी हुई है।

यहां पर बहोत सी मोमबत्ती जल रही है जो सफेद रंग की हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी--

पे कुर्सियां पीले रंग की पड़ी है आसपास गुलदस्ते लगे हैं।

यहां पर बहोत से डीब्बे रखे हुए हैं जो नीले और सफेद रंग के हैं।